इसके पूतले के काले शूज है इसके निचे एक लकडी का बक्सा है जिसके ऊपर से ठहराया गया है पीछे की दिवार सफेद है और एक बाजू बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है।

इस चित्र में बड़ा सा हरा जंगल नजर आ रहा है जंगल में अंदर जाने के लिए एक रास्ता बना हुआ है।

और अंदर जाने के लिए शोरूम में सीढिया सीढिया है और दरवाजे कांच के बने हुए है ऊपर बिल्डिंग का रंग सफेद है चोकलेटी है और एक हरा पर्दा नजर आ रहा है।

इस चित्र मैं एक अ-दो पुतले नज़र आ रहे है पुतले के गोद मैं एक छोटा सा नन्हा बालक का पुतला भी बनाया गया है।

इस चित्र में एक बड़ा सा पुतला बनाया गया है पुतले के आसपास दिवार घीरी हुई है दिवार का कोई रंग नहीं है।

दिवार एक छूंता भी लगा हुआ है दूसरी तरफ एक स्टान में दिया भी जल रहा है पुतले के निचे कुछ सामान रखा हुआ नहीं है और पुतला सफ़ेद रंग का दिवार में धसा है।